लगे हुए हैं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आस पास हमें बहुत सारे घर भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ।

यहाँ पर हमे दिया गया है की यहाँ पर शिवजी की पिंडी पर बहुत सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं और उनके साइड में शिवजी की --

पत्ते गिरे हुए है यहाँ पर देख पा रहे है एक बड़ा सा घना पेड़ भी हम यहाँ पे देख पा रहे है।

और यहाँ पर हमे फोटो के अंदर हमे दिखाया जा रहा हैकी यहाँ पर एक फेस्टिवल बन रहा है और यहाँ पर फेस्टिवल में --

जैसन की अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं --

जैसे की अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं की यहाँ पर हमें यह एक फोटो दिखाया जा रहा है फोटो के अंदर यहाँ पर हमें बहोत सारे --

एक फोटो दिख रहा हैऔर फोटो के अंदर हमें यह एक एस.बी.आई. --

फोटो के अंदर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं की आगे की

देख पा रहे हैं और यहाँ पर हमें जिओ का भी बोर्ड लगा हुआ देख पा रहे हैं ।

भगवान की मूर्ति भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारे भगवानजी खड़े हुए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ।

उसका नाम यहाँ पे लिख हुआ है बोर्ड पर कार्यालय

देख पा रहे हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे आस पास पेड़ भी लगे हुए देख पा रहे है बड़े बड़े --

वो लड़का बनियान और लोबर पहना हुआ हैं उस लड़के ने --

स्विमिंग पूल मे बहोत सारे झूलें भी दिख पा रहे हैं यहाँ पर।

और यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो फोटो भी दिखाया जा रहा है और फोटो में हम देख पा रहे है की हमें यहाँ पर बहोत सारी बसे और--

जैसे कि अपन यहाँ पर देख पा रहे है यहाँ पर हमें यह एक स्क्रीन पर फोटो दिया गया है और यहाँ पर हम देख सकते है कि यहाँ पर हमें बहोत सारे --

हम्म भगवान जी भी बेठे हुए दिख पा रहें हैं बुद्ध देव व यहाँ पर हमें बड़ा सा उनका मंदिर एक --

जैसा की अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं । यहाँ पर हमें एक स्क्रीन पर फोटो दिया गया है ।